टेंपो के अर अंदर कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुछ बहुत सारे आदमी और बच्चे अपना थैला लिए हुए बाहर खड़े हैं।

गुब्बारे हरे ऑरेंज और सफेद कलर के हैं और यहां पर सोफे पड़े हुए हैं।

उस पर कॉफी कलर की छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है।

उन्हीं की केबले एक दूसरे से टच की हुई है और नीचे कुछ समान रखा है।

इस चित्र में हमें देसी दवाइयों की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक काउंटर रखा है।